एन.ई. लिखा गया है यहाँ पे डेकरैशन छोटे-छोटे फूलों का किया गया है सामने सफेद रंग का चेयर --

ये तस्वीर बहुत ही खूबसूरत ली गई है और ये घर बहुत ही पुराना दिख रहा है जो की बहुत पुराने --

जहां पर सामने की ओर दो नौका रखा गया है।

यह तस्वीर एक ऊंचे से पहाड़ का है जो की काफी पेड़-पौधों से लदा हुआ दिख रहा है।

यह एक बहुत खूबसूरत सा मायक्लीनर्स डॉट इन लिखा हुआ है।

ये एक पहाड़ की है जहां पे व्यक्ति चल रहे है कुछ बैठे है।